और बगल से कुछ इ गाड़िया और गाड़ी ट्रेकटर खड़ा हुआ है अ अ अ बगल से पेड़-पौधे दिख रहे हैं हरे है बादल हल्के नीले --

और उसके बगल से हरी पत्ती दिख रही है बादल नीले है।

एक ऑयल है पेट्रोल टंकी है जिस पेट्रोल टंकी में ऑटो खड़ी हुई है और फिर ट्रके अगल-बगल ट्रके खड़ी हुई है सामने एक डस्टबिन रखी हुई है गाड़ी खड़ी हुई है और पेड़-पौधे है जो हरी पत्तियां है।

ये एक जो पेट्रोल टंकी है जिस पेट्रोल टंकी जिसमे दो पेट्रोल टंकिया हैं।